नजर आ रहे है। पत्थरोंके सिडिया बनी हुइ है। पहाड़ एरिया ही लग रहा है।

इस मेन गेट के ऊपर का पोस्टर ब्लू कलर का किया गया है ये चारों साइट की एक बाउंड्री व्हाइट कलर की है।

लगाया गया है। इसके अंदर बोहोत सारे पेड पौधे भी नजर आ रहे है।

तीन साइड नजर आ रही है। के मेन गेट का कलर ब्लॅक है। इसमे बहुत सारे फ़्लोवर्स बहुत सारे पेड पौधे नजर आ रहे है।

इसमे बहुत सारे घर और गार्डन नजर रहा। यहा के घरां घरों का कलर व्हाइट और ग्रे पिंक रेड का किया गया है।

यहा बहुत सारी लाइटस भी जल रही है। बहुत सारे फॅन भी लगे है।

हैंड्स बॅग भी टंगा हुवा है। कपड़े डालने वाले बॅग भी टंगे हुवे है। इसमे एक लड़का खड़ा हुआ है। जो अपना सामान बेच रहा है।

इस चित्र मे महानगरपालिका भवन नजर आ रहा है। जहा कुछ पेड भी लगे हुवे है। बहुत सारी कार भी खड़ी हुई है।

ऑटो भी खड़ी हुई है कुछ सारे लोग भी बाइक से आ जा रहे है।

इस चित्र मे बहुत सारी दुकाने नजर आ रही है एक टावर भी खड़ा दिख रहा है बहुत सारी गाड़िया बाइक --